यह एक बहुत सुंदर स्कूल है।

और स्कूल के बाहर बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं और रेता भी दिख रहा है।

यह एक बहुत सुंदर कारपेंटर की दुकान है।

जिन्होंने नीले कलर का बनियान पहेरा हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

और सरकारी स्कूल के अंदर बहुत सी लड़की खड़ी हुई हैं।

और एक दुकान के अंदर एक आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है।

और इस कंपनी के अंदर बहुत से आदमी हैं और एक लैपटॉप भी दिख रहा है।

और छत में लाइटे और बहुत से पंखे भी रखे हुए हैं।

और इस ऑफिस के अंदर चार कुर्सियां रखी हुई है और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर कॉलेज है।

यह एक बहुत सुन्दर कंपनी है और इस कंपनी के कमरे के अंदर बहुत से लैपटॉप रखे हुए हैं।

यह एक स्टेट बैंक ए_टी_एम है।

जैसे की रियलमी का और ओप्पो का फोन रखे हुए हैं और वीवो के फोन रखे हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर फल फ्रूट की दुकान है।

और इस दुकान में बहुत से फल रखे हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर मंदिर है।

इस मंदिर के बाहर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

बाहर साइकिले और मोटरसाइकिले खड़ी हुई है।